रास्ता में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है आगे में इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइट भी जल रहा है।

अंदर में एक भी गाड़ी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

वॉल का पिक्चर में इंडियन फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। इंडिया मैप भी चिपका के दिखाई मिल रहा है।

अंदर में एक गिटार भी रखे दिखाई दे रहा है।

सामने में बहोत सारा डक्स दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में दो कुर्सी दिखाई दे रहा है टेबल भी दिखाई दे रहा है।

उपर मैं झूमर लाइट भी लगा कर दिखाई दे रहा है।

लड़का व्हाइट शर्ट जींस और शू पहन के दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बड़ा सा साउंड बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा लेदर सिढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग एंट्रेंस के ऊपर में दादू पाना ट्रेनिंग एकेडमी हेयर मेकअप एंड ब्यूटीशियन लिख के दिखाई दे रहा है।

टेबल में बहुत सारा रजिस्टर बुक्स भी दिखाई दे रहा है टेबल में एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट भी--

काउंटर के ऊपर में स्क्रीन पर चल रहा है।

पानी बोटल्स भी दिखाई दे रहा है।

दो इंसान भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा सॉस भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा मैगी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा भी दिखाई दे रहा है।

शॉप मे बहुत सारा कलम भी रखा हुआ है।

और बहुत पेपर ग्लू भी दिखाई दे रहा हैं।

नीचे ग्राउंड में ब्लू कलर का एक सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

तीन मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर सोफा भी दिखाई दे रहा--

में एक बुद्धा खड़ा करके बैठा हुआ है।

अंदर में मीठा तेल भी दिखाई दे रहा है।